और कुछ गर्ल्स भी हैं और साथ मे एक ठेला भी दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यह इमेज एक डांस क्लास का है जिसका नाम डी_एन डांस नेशन हैं।

बहुत से कंप्यूटरस भी हैं और साथ में खुर्सियाँ हैं जो वाइट कलर की हैं और सामने की दीवार पे ए.पी.टी. लिखा हुआ है और इस दिवलो में गुआ गुलाबी रंग के कलर पुते हुए --

ये एक दुकान का है जिस पे लिखा हुआ अर्पिल ज्वेलरस । इस दुकान के सामने दीवाल पे --

इस इमेज में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लोग हैं और ये शाम का एरिया है सूरज ढलने वाला है।

इसमें सामने की ओर एक ज् जग दिखाई दे रहा है और गिलास भी दिखाई दे रही है। सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसके सामने एक कटोरी रखी है जिसमें चम्मच भी डला है।